कुछ लोग झंडा ले के आए हुए हैं और बच्चे लोग का ड्रेस है ऊपर में येलो कलर का है और नीचे में रेड कलर--

बहुत सारे आदमी जा रहा है नीचे और ऊपर चघ रहा है।

इस इमेज में दिखाया गया है कि यहां पे एक नया घर बन रहा है यहां पे एक आदमी खड़ा है।

इसके चारों तरफ से लोहे का बना हुआ ग्रिल है और अगल बगल पेड़ पौधा लगाया हुआ है और नीचे में लेफ्ट में लिखा हुआ है जमशेदपुर स्कूल ।

ऊपर मे टंकी रखा हुआ है वही पे बहुत सारा तार गया हुआ है इधर उधर पूल गढ़ा हुआ है।

रूम है इस रूम में बहुत सारे कुर्सी रखा हुआ है।

फोन में हेलो का फिगर बना हुआ है और मोबाइल के डिब्बा का कलर है वाइट कलर का और रेड कलर का।

मशीन है येलो कलर का बहुत सारा यहां पे एक झंडा गाड़ा हुआ है।

इस दृश्य में दिखाया गया है कि यहां पे एक छोटा सा दुकान है इस दुकान के ऊपर में एक पोस्टर लगा है।

इसमें यह दिखाया जा रहे है कि यहां पे गोल्डन कलर की मूर्ति बना हुआ है।

यहां पे एक ठो पोस्टर लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है फाउंडेशन यहां पे यहां पे पाठशाला होता है यहां पर फाउंडेशन हो रहा है बेग बटाया जा रहा है।

इस दृश्य में दिखाया गया है कि यहां पे एक बड़ा समुद्र है इस समुद्र का पानी है वो ब्लू कलर का है।

चार लड़की है एक लड़की पीनी है रेड कलर का एक वाइट कलर का ब्लू कलर का।